और घर में बहोत सारे लोग खड़े हुए है नीली लाइटों से सजा है घर अच्छा लग रहा है।

एक सूचना का बोर्ड लगा हुआ है।